यह एक जहां सवाई मानसिंह हॉस्पिटल लिखा है बाहर कुछ लोग भी नजर आ रहे --

इस इमेज में यहां पर एक नदी दिखाई दे रही है सामने पहाड़ भी --

इस फोटो में सामने यहाँ पर एक खंडेलवाल ढाबा दिखाई दे रहा हैं।

इस इमेज में यहां पर एक बुक स्टोर नजर आ रही है।

यहां टमाटर भिंडी प्याज लिंबू नजर आ रहे हैं।